यहाँ पे एक सिस्टर दिख रही है मुझे और यह एक स्कूल की तरह लग रहा है| यहाँ पर कुछ बच्चे अपने ऐक्टिविटीज दिखा रहे हैं।

यहाँ पे बहुत बड़ा सा नीचे गड्ढा खोद के टैंक की तरह बनाया गया है।

सामने एक लाल कलर की ईटो से इमारत बनाई गई है उसके बीच मे एक मूर्ति दी गई है।

और ऊपर तिरकोना टेम्पल की तरह बनाया गया है पिलर दिये हैं खूब सारे।

पीछे पर्पल कलर के परदे दिए गए है पंखे लगे हुए है।

और लाइट हैगी पीओपी हैगी उसपे कत्थई कलर का भी पेन्ट करा है।

सफ़ेद डीलर रखा डिज़ाइन कया है पि-ला प्रोपे--

उसके बीच में घडी रखी गई है बीच नीले कलर के तीन सोफे है।

ये सामने एक मूर्ति हैगी शेर बने हुए है उसमें पानी निकल रहा है फव्वारे की तरह।

देखो बहुत सारे पेड़ उग्ग रहे है छोटे छोटे पेड़ उग्ग रहे है।

और यहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे है एक--

पेड़ उग रहे है बहुत सारे और यहाँ घास उग रही है दूर-दूर।

सामने एक काले रंग के और कथई रंग के सोफ़े लगी है बहोत सारे उसपे टेबल है टेबल पे सफेद कपड़े रखे है और--

यहा पे एक गेट है उस पे कांच लगा हुआ है| बहुत बड़ा सा गेट है| आसपास सब जगह कांच लगा हुआ है।

और जाली के पीछे ना तीन खिड़कियां हेंगी।